उम फूल लगा हुआ है। गुलाब फूल भी लगे हुए है अगल बगल सो पत्तिया है पेड़ पोदे है जो हरे भरे दीखते है बदल है जो बदल सफ़ेद है।

और जु जु और कुछ गुब्बारे बाला भी खाड़ा है अगल बगल पेड़ पौधे है बादल नीले है।

एक बड़ासा क्लब बना हुआ है। जिस क्लब मे सभी लोग खड़े हुए है कुछ लोग अगल बगल बैठे हुए है। और उम--